एक सैलून के उद्घाटन के पहले की तस्वीर जिसके बाहरी पर्षद में खड़े होकर कुछ युवा या फिर कुछ व्यक्ति फोटो खिचवा रहे हैं।

बड़े से मैदान किन के के अंदर दौड़ते कुछ बच्चे जो की जूता पहने हुए हैं साथ मे दो बालक दो लड़के का शर्ट पीला कलर का है एक काले कलर के शर्ट पहन करके दौड़ रहा है।

सभी के सभी लोग अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे हुए हैं।

साथ में अपने एक पैर को खड़ा करके यह पे-पैर उठा करके एक पैर पे फोटो खिचवाने की मुद्रा में है यह युवा चश्मा पहने हुए है।

बड़ा सा डी.जे. साउंड एक बड़ा सा डी.जे. साउंड जिसका नाम शर्मा ऑडियो है इसमें बहुत सारी लाइटे लगी हुई है और बहुत सारे बड़े-बड़े स्पीकर लगे हुए हैं।

एक बड़ा सा मैद एक बड़ा सा पार्क यह फिर एक बड़ा सा मैदान जिसके ये ठीक बीचों-बीच में एक घर --